कलर की है और फूलो की माला पहने हुए है पीछे एक सीढियाँ लगी हुई है और दोनों साइड कुछ पेड़ दिख रहे है।

सामने पाँच लड़के बैठे हुए है जो कुछ सामने कुछ पेंटिंग कर रहे है एक लड़का--

तो कहीं - कहीं हरा कलर दिख रहा है और हाथ में एक छोटा सा --

बड़ी सी जहाज हैं इसके ऊपर छत्त है यहाँ कुछ आदमी है और किनारे पे बहोत से पत्थर दिख रहे है ऊपर आसमान दिख रहा है पीला-पीला और सूर्य--

सामने स्टेज बना हुआ है जिस पे एक मूर्ति रखी हुई है इसके पीछे रंगीन--

है जो ऊपर काले कांच और निचे पिले लकड़े की है और निचे भी कुछ खिडकिया बैठे है।